यहाँ पे दौड़ने की मशीने होती है जिस पे लोग दौड़ते हैं |

और यहाँ पे हमें खेल के भी समान मिलते हैं जैसे फुटबॉल क्रिकेट के खेल के समान कैरम बोर्ड ।

यह एक लेक्चर हॉल है यहाँ पे लेक्चर दी जाती है ये हॉल बहुत ही बड़ी बनाई गई है।

इस में गेहूं को काट के डाल दिया जाता है | उस से गेहू एक तरफ से अधिक तरफ से भोंसी निकलती है ।

उसमें अपने जमा पूंजी को रखते हैं और जरुरत पे निकासी भी करते हैं।

यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं जिसमें फसल लगाये गये हैं।